इस यह बिल्डिंग बहुत सुंदर दिख रहा है लेकिन एक कोना--

यहाँ पूल बहुत अच्छा दिख रहा है मस्त रंग-बिरंगे है।